और की सामने एक पंखा है ऊपर और हमें एक कार्टून की पिक्चर भी दी--

जहां पे लोग जा रहे हैं उनके काम से पर एक रिक्शा दिख रही है हमें और एक पेड़ दिख रहा है।

यहां एक डेकोरेशन टाइप रखा हुआ है जोकि शादियों में यूस करते हैं लोग।

जो कि हो सकता है किसी उनके--

यहाँ पे हमें एक पिक्चर दिख रही है जो की महल टाइप वगैरा के दिख रही है।

और जहां पे जो नदी हैं वो गंदी हो चुकी हैं क्योंकी उसे अच्छे से साफ किया नहीं गया हैं।

चार बाइक हमें दिख रहे है और ये रिपेयरिंग की भी शॉप हो सकती है।

यहां पे हम देख सकते हैं कि एक रेस्टोरेंट की पिक्चर है।

यहां पे हम एक मंदिर देख रहे हैं।

बैनर लगा हुआ है जिससे लोगों को पता चले की यहा--

रखे हुए है जो की हाथो से बनाए जाते है जोकि विलेज मे बहोत सारे लोग अभी भी शायद बनाते होंगे और इवनिंग का टाइम है।